देख सकते है ये भाई साहब जा रहे है अंदर।

त अ राजू का दुकान --

और यहाँ पे गाड़ी है और ये बजरंगबली देख सकते है काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा देख सकते है ये बजरंगबली --

कोई आइसक्रीम बिग रहा है खा रहे हैं देख सकते हैं ।

और ये घर बहुत ही मंदिर जैसे दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को देख सकते हैं लेकिन बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है ।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे --

और ये बहुत ही अच्छा ठीक करता है देख सकते है।

वगेरा देख सकते हैं | काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और जबरदस्त लुक देख सकते हैं ।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त बादल छाया हुआ है | चारो साइड से देख सकते हैं काफी सारे घूमने का --

हेलो गाइस देख सकते हैं ये न्यू न्यू पेट्रोल पंप खुला हुआ है | देख सक --

और यहाँ पे बहुत अच्छा तेल वगैरा मिलता है और --

स्कूल पे डांस कर रहे है देख सकते है ये छब्बीस जनवरी का है।

हल्लो गाइस देख सकते है ये स्कूल काफी बड़ी है और काफी --

बाहरे बाहरे जने से यहाँ पे देख सकते हैं ।

सीन दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को --

काफी सारे नारियल के पेड़ खिजूर के पेड़ --